इस चित्र में ऊपर मौसम खराब लग रहा है।

यह एक बॉडी फिटनेस अकैडमी है पीछे दिख रहा है।

एक मंदिर दिखाया जा रहा है जिसका रंग पीला है।

यहां एक मैदान है जहां बहुत सारे पेड़ दिख रहे है।

पीछे एक ट्रक भी लगा हुआ है।

घर बनाने की तैयारी हो रही है इस फोटो में --

आदमी टीशर्ट पहना है सफेद कलर का ग्रे कलर का पैंट पहना है।

यह कोई रेस्टोरेंट लग रहा है देखने से।

पीछे एक पीला कलर का बल्ब भी जल रहा है।

एक पीला कलर का बल्ब भी जल रहा है।

अच्छा मौसम हो र हुआ है।

यह फोटो किसी फ्रूट स्टाल की है।

फोटो में दुकानदार का चेहरा ब्लर है।

बहती नदी दिख रही है नीला आसमान दिख रहा है।

इस सीनरी में कई से पहाड़ दिखाए गए हैं और एक नदी दिखाई गई है।

इस फोटो में दिखाया गया आसमान स अ सफा है नीला है और सफेद बादल भी हैं।

राइट साइड एक खिड़की भी है।

पिक्चर में दिन का मौसम दिखाया गया है और आसमान में सफेद बादल भी हैं।

चेयर्स का रंग ग्रीन है और टेबल का र रंग लाल है।

राइट और लेफ्ट साइड दो खिड़की भी है।